रेस्ट्रोन्ट के बाहर एक रेलगाड़ी है बच्चों को खेलने के लिए ।

सब लोग एन्जॉय कर रहे हैं।

ये एक माउंटेन है।

सामने में एक लड़का बैठा हुआ है मोबाइल यूज कर रहा है वो अपना --

यहाँ इलाहाबाद बैंक का ए.टी.एम. है।